हमें एक बिल्डिंग नजर--

इसमें हमें टेबल पर लैपटॉप और कुर्सियां भी दि--

हमें कोई कैफे का दृश्य--

इस दृश्य में हमें ये--

इसमें हमें एक आदमी काले रंगों के वस्त्र में दि--

देखने से यह तस्वीर हमें किसी--

पोस्टर पर बैंक ऑफ बरोड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा हैं।

बिल्डिंग के अंदर की दिखाई जा रही है।

इसमें हमे शायद किसी जंगल का दृश्य नजर--

व्यक्ति भी नज़र आ रही है।

देखने से यह तस्वीर हमें किसी मूर--